और आसन नीला दिखाई दे रहा है आसमान में बादल भी है जो सफेद नजर आ रहे हैं और यहा एक बीच में कुछ घर बना है उसके उस तक जाने का ब्रिज भी है यहा पर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक नदी है और नदी हिल सकती हैऔर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे और इम बी ब्रिज डला हुआ है।